बहुत सारे घर के सामान भी मिलते है।

और यहां एक बैठने की--

खेल रहे हैं और यहां आस पास--

अल्ट्रासाउंड और बहोत सारी टेस्ट्स --

और यहां बहोत सारे लोग ट्रेन पकड़ने--

और यह एक जंक्शन भी है जिसका नाम है--

यहां बहोत सारी जे_सी_बी लगी हैं।